ऑटो भी खड़ी है एक साइड से एक उम पिलर है।

रेड कलर की बैलून लगाई हुई है बहुत सारे आदमी हैं पीछे से बहुत सारा डेकोरेशन --

किनार में बहोत सारी महिलाएं खड़ी है और यहां छठ पूजा मनाया जा रहा--

वाटिका शैंपू डब शेम्बु हेडेनशोल्डर --

यह एक कस्टमर सर्विस ऑफिस है।